इस इमेज में हमको तीन चार चेयर कुर्सियाॅं दिख रही हैं एक काले कलर की है।

और दो लोग उजाले कलर की शर्ट पहने हुए है । एक ऑरेंज कलर की शर्ट पहने हुए हैं । गले मे कुछ बांधे सर पर कुछ हुए हैं। यह ड्रेस काफी खूबसूरत लग रहा है ।

इसी इमेज में हमको बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं । जो की डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं । इस इमेज में हमको एक व्यक्ति फोटो निकालते हुआ दिखाई दे रहा है ।

और नीचे हरे कलर की चटाई बिछी लाल कलर की चटाई बिछी पीछे दीवाल लाल कलर की है | या मे ऐ.सी. भी लगी है सफ़ेद कलर की।

यहाँ हम बड़े-बड़े पेड़ दिखा रहे हैं जो हरे कलर के है। बड़े-बड़े पहाड़ देखा रहे हैं जो हरे कलर के हैं।